और यहाँ पर मुझे बहुत ही सुन्दर लग रहा है कुर्सी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक गमला बीच में रखा हुआ दिखाई दे रहा यहाँ पर बहुत ही सुन्दर नजारा देखने को मिल रहा है।

मुझे यहाँ पर एक अ पक्षी दिखाई दे रहा है जिस लाल चोंच है और यहाँ पर हरियाली है मतलब ऐसे की कुछ पत्ते लगे हुए है थोड़े-थोड़े हरे-हरे--